यहां कुछ आदमियों ने बहुत से लोग टहरे हुए है बहुत बड़ी महल है और बहुत सारी आदमियों रकम के कपड़े पहनकर ठहरे हुए हाई |

यह ए_टी_एम है टवेंटी फोर ऑवर नामक और एक मदिन शॉप है और मतलब मेडिकल स्टोर है एक फोर जी नामक एक दुकान भी है।

यहाँ एस_बी_आई बैंक हैं बहुत बड़ी गाड़िया धीरे हुए हैं बहुत से आदमी लोग अंदर गए हैं और खुला हैं बहुत बड़ी एस_बी_आई बैंक हैं।

यहाँ स्टेट बैंक ए_टी_एम है ये बहुत बड़ा है यहाँ बाहर सीढ़िया है अंदर ए_सी है और लाइट है और कुछ लोग मोजूद है |